यह एक पार्क का चित्र दिख रहा है जिसका नाम निक्को पार्क है।

घास लगी है आसमान दिख रहा है।

जहाँ पर औजार रखे है कुर्सी रखी है रस्सियाँ रखी है।

पानी निक बेह रहा है।